पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और पुतले भी दिखाई दे रहें हैं। यहाँ पे एक बाइक भी रखी हुई है और रोड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे दुकान दिखाई दे रही है जिसकी दीवाल का कलर व्हाइट और येलो है।

यहाँ पे बहुत सारे फूल रखे हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहां पे पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और नीचे घास भी उगी हुई हैं।

यहाँ पे कुछ पोस्टर वगैरा भी लगे हुए हैं और पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

पे कुछ पोस्टर वगैरा भी लगे हुए हैं और एक तालाब भी दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ --

यहाँ पे बिजली के तार भी दिखाई दे रही है और --

यहां पे एक कार भी दिखाई दे रही है और ठेला भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं। बिजली के खम्भे भी दिखाई दे रहें हैं और कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके दीवाल का कलर वाइट है।

कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं। यहाँ पे पहाड़ी भी दिखाई दे रही --

एक फूलों की मालाएं भी लगी हुई हैं और कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे--

बाल्टी भी रखी हुई और कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं।

बाउंड्री उठी हुई दिखाई दे रही है और कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे --

यहाँ पे रोड दिखाई दे रहा और बाइ --